जिम एरिया दिखाई दे रहा है जिम एरिया मे तीन चार व्हील साईकल खड़े है जोकि एक्सरसाइज कर रहे --

ये पर्सनली मुझे भी बहोत पसंद है।

एक बाइक पे एक व्हाइट कलर का पर्सन खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में हमें एक बेकरी की शॉप दिखाई दे रही है बेकरी के शॉप में --

है डिस ग्लोवर पे एक स्टैचू खड़ा है लड़की का--

इस पिक्चर में हमें व्हाइट कलर ब्लू कलर और बेड कलर के अलग अलग बेड और बॉल दिखाई दे रहे हैं।